पीली शर्ट ऑरेंज शर्ट पेहने हुए नहा रहे हैं ऊपर देखोगे कि बोहोत बड़े बड़े जंगल टाइप का है चट्टान ही चट्टान आपको दिख रही होगी।

देख सकते हैं कैफे है ये कैफे में दो तीन लोग हैं जो कै मैगी खा रहे है।

देखो के नीचे ड्रम रखा हुआ है जो ड्रम है बहोत बड़ी मशीन लगी हुई है आजू बाजू देखो कि रेता ही रेता लगी हुई है।

देखो डब्बे ही डब्बे में सैंडल रखी हुई है आजू बाजू देखो कि लाल कलर पीले कलर की है।